यहाँ हमे संतरी रंग की कुछ मशीने नज़र आ रही हैं।

हरे-भरे पेड़ नज़र आ रहे है छोटे -और बड़े दोनों ही पेड़ नज़र आ रहे है यहाँ--

लैम्प वाली लाइट भी लगी हुई है बड़े-बड़े पेड़ भी नजर आ रहे है यहाँ पर --

जिस पर ज्ञानंदा टोटोरियल्स लिखा हुआ है अ नी --

एक सिकक्षिका खड़ी हुई है वो बच्चे कुछ बना रहे है पेपर की मदद से--

कार खड़ी है बाइक खड़ी--